यह श्री महावीर महा महावीर श्री महावीर दुर्गा मंदिर विद्यापीठ चौक लखीसराय की --

एक मार्केट है इस मार्केट का नाम सुपर मार्केट के नाम से --

हरा-भरा जंगल है। यहाँ बोहोत सारी झाड़ियां है।

घर है यहां से पानी बह रही है।